यह हम लोग के गाजीपुर का उत्तर प्रदेश परिवहन का बस स्टैंड है।

ये एक हॉस्पिटल है।

ये गाज़ीपुर का औ उत्तर-प्रदेश का अ कॉर्पोरेशन लिमिटेड --

ये संजीवनी हॉस्पिटल गाज़ीपुर के मेन रोड के सामने --

यह लंका के पास में होंडा सि ऐ होंडा का शोरूम है। यहां गाड़ी उतरते हुए भी देखा जाएगा और बेचारी होंडा की गाड़ी भी दिख रही है।